और इसमें पानी में भी दो पर्सन है और उसका आज पानी जो ऊपर कि तरफ चल रहा है। यह बहुत ही अच्छा --

यह एक डी.जे है। इस पर लिखा है शर्मा ऑडियो इससे बराबर में एक बिल्डिंग है और इसमें ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है। इसमें बहुत सारे डी.जे हैं। डी.जे का बेस काफी अच्छा है या किसी गाड़ी पर लोड है।

और बहुत ही ओसम पीटारा है यहाँ पर पेड़ पेड़ ओर की परछाईयाँ पानी में प्रदर्शित हो रही हैं।